एक व्यक्ति टी-शर्ट लोअर पहना हुआ अपनी मिरर फोटो ले रहा है।

रैक में पैकेट और बोतले रखी हुई है।

तस्वीर में एक हरे और नीले रंग का ऑटो दिखाई दे रहा है जिनके ऊपर माला पड़ी हुई है।

उनके ऊपर गुलाबी और सफेद रंग के गुब्बारे लगे हुए हैं।

तस्वीर में एक सफेद रंग का काउंटर दिखाई दे रहा है।

गार्डन के साइड में पौधे लगे हुए तथा वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं।

पेट्रोल पंप के पास में एक लाल रंग की बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

पेट्रोल पंप के सामने सड़क दिखाई दे रही है जिस पे एक आदमी जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

उसके बीच में डिवाइडर बना हुआ है।

यह तस्वीर एक ढाबे की है जो की ज्ञानी जी का ढाबा है।

तस्वीर में कुछ लड़कियां धार्मिक नृत्य करती हुई दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर एक जिम के अंदर की है।

पीछे की ओर ट्रेडमिल दिख रही है जिसमें एक व्यक्ति कार्डियो एक्सरसाइज कर रहा है।

दुकान के अंदर एक ग्राहक या कर्मचारी दिखाई दे रहा है जो साड़ियां देख रहा है।